अ काउंटर पे कुछ सामान और एक मोबाइल रखा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत बड़ा मॉल दिखाई दे रहा है | जिसका नाम अमूल --

व्हाइट पेंट पहना दिखाई दे रहा है | एक दीवाल दिखाई दे रही है | बहुत सारे ऊपर झाड़ लगे दिखाई दे रहे हैं |

एक पुतले एक अ में बैठी दिखाई दे रही है जिसने अ लाछा पहना दिखाई दे रहा है।

ऊपर बिजली की तारें दिखाई दे रही है आजु-बाजु कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक लेडी जाते दखाई दे रहे है ।

और नीले कलर का और वाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है आजु-बाजू बहुत सारे झाड़ लगे दिखाई दे रहे हैं सामने एक ईमारत बनी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक अअ अंमम साइकिल स्टोर दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे साइकिल और बाइक खड़ी दिखाई दे रहे है।

एक ए.सी. लगी दिखाई दे रहे हैं | दो पिलो रखे दिखाई दे रहे हैं | गुलाबी कलर --

व्हाइट कलर के कपड़े पहने कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं | एक रेड कलर की साड़ी दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पर एक शादी का हॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ।

पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है | बिल्डिंग कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है इसमें --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

टाइम दिखाई दे रहा है | अ और झाड़ लगे दिखाई दे रहा है | डंडे लगे दिखाई दे रहे हैं लकड़ी के ।

आखिर उसी कलर का लाइट लगा दिखाई दे रहा है जिसके नीचे स्टार्स लगे दिखाई दे रहे है कुछ कुर्सियां और टेबल रखे दिखाई दे रहे हैं ।

नीचे लोहे के गेट लगे दिखाई दे रहे है लाइटिंग लगी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है ।